इसमें जो है बेडरूम दिखाई दे रहा है और ये बेडरूम का कलर जो है ब्लू कलर नजर आ रहा है।

उसमें एक ठो बिस्तर है और एक ठो टेबल है और एक ठो चेयर है चेयर जो है ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और टेबल जो है ब्लैक कलर मे दिखाइ दे रहा है।

एक व्हाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड करके दो बोर्ड दिखाई दे रहा है।

उसमें जो है पानी भी दिखाई दे रहा है येलो कलर में और साथ में इसमें जो है घर भी दिखाई दे रहा है।

और ये घर जो है इसमें वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

ये टेबल जो इसमें ब्रॉन्ज कलर में दिखाई दे रहा है।

उस साइड में जो इसमें पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

दोनों लड़का लड़की दिखाई दे रहा है इन में और सन बेस में बाहर में एक ठो लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो है एक ठो लैपटॉप और एक कीबोर्ड और माउस और एक ठो चेयर भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में।

इसमें जो है दो ठो दुकान दिखाई दे रहा है।